जिसके अंदर बहुत सारे खाने की चीजे हैं।

गेट का रंग नीला है।

टेबल के ऊपर नीला रंग का केतली भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर मुझे एक छोटा सा विंडो से बना हुआ घर दिख रहा है।

नीचे के दीवार में स्विच बॉक्स भी लगा हुआ है।

इसके अंदर एक इंसान है।

कमरे का रंग सफेद है।

टेबल के ऊपर टिशु भी रखा हुआ है।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

माइक भी लगा हुआ है।

बिल्डिंग के पास इंसान भी दिख रहे हैं।

कमरे के बाहर बहुत सारे फूल तांगाए हुए हैं।

इस तस्वीर पे मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है।

जिसके अंदर बहुत सारे खाने के चीजें रखे हुए हैं।

दुकान के अंदर बहुत सारे जूस भी है।

दुकान का दरवाजा शीशे से बने हुए हैं।

तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में दो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के किनारे छोटे छोटे घर भी है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

पेड़ के बगल में बहुत सारे ऑटो भी है।